एक जलाशय में खंडित चौकोर बना हुआ है।

दिखती हुई सुंदर लग रही है।

इस वीडिओ में सामने एक स्टेट बैंक ए_टी_एम दिख रहा है।

इस नदी के किनारे एक नदी के घाट पर एक मंदिर का निर्माण है।

लोग अ दशहरा मनाते हुए रावण के पुतले को जलाते हुए उसमें लोग इकट्ठे हैं।

एवं उसमे भी खरीदी जाती है उनका --

बच्चों को बैठने और लिखने दोनो की सुविधा उपलब्ध है।

जिससे लोग आपने स्वास्थ के लिए एक स्वास्थ के लिए व्यायम करते रहते हैं।

रस्ते में कुछ कटीले पेड़ भी है।